रेस्टोरेंट के ऊपर दिखाएं होटल जय गुरुदेव होटल के बाहर कुछ कारें खड़ी हुई हैं।

यहां पे जिम की मशीनस रखी हुई हैं।

और वेट लिफ्ट की चीजे भी रखी हुई है वही एक आदमी--

इस बॉक्स में बहुत सारी मछलियां रखी हुई हैं।

जहां पे ऊपर के दुकान पे लिखा है टेस्ट अबाउट ऑल ।

यहां पे बॉक्सेस में पैक किया हुआ सामान रखा है।

साइड में दो स्कूल बैग रखी हुई है और एक थैला रखा--

एक आदमी ग्रीन कलर की शर्ट पहने अंदर जा रहा--